यह एक बैंक है जिसका नाम है अनलोन बैंक यहां पर बहुत ये बड़ा बैंक है और यहां पर काफी सारा बाइक भी है स्कूटी भी है और ये यहां पे आदमी भी है।

उसके बगल में एक पहाड़ी इलाका भी है जो की बहुत अच्छा सा लग रहे है यहाँ पे तरह की लाइट भी लगे हैं।